एक दुकान दिख रहा है जिसमें बहुत सारा सामान है जिसमें घर में यूज करने वाले सब सामान दिख रहा है घर में यूज कर जैसे प्लास्टिक का ञ और--

एक दुकान दिख रहा है इसमें हर चीज रह रहा है जैसा कोल्ड ड्रिंक्स पिज़्जा माजा सब दिख रहा है चीज वगैरह भी है बच्चे लोग का चिप्स है बिस्किट है पूरा यहां पर सब सामान रखा हुआ है और एक जन सफेद अम् शर्ट पहन के खड़ा भी है अपना सीधा खड़ा है ।

ये एक स्टेज दिख रहा है जिसमें पूरा अच्छे से डेकोरेशन कराया गया है पेंडल कराया गया है और एक लड़की है लकड़ी लड़की डांस कर रही है पूरा डांस कर रही है पीछे पोस्टर टंगा हुआ है यहाँ पर सिर्फ एक लड़की दिख रहा है अपने डांस में अ डांस में मजे --

एक मार्केट दिख रहा है मछली का मार्केट है जहां बहुत वैरायटी का मछली दिख रहा है बहुत अम् सब अलग-अलग मछली रखा हुआ है तो पूरा मछली मार्केट में भीड़ है और दो लेडीज मछली खरीद रहे हैं एक जैंट्स बैठे हैं मछली के पास तो मछली दे रहा है तो यहां पर बहुत सारा मछली लेके बैठा है।

ये भी एक दुकान दिख रहा है जिसमें चिप्स बिस्किट सब रखा है यहां पर कोल्ड ड्रिंक अ माजा न सब कुछ है तो यहां पर व फ्रिज में साइड में माजा कोल्ड ड्रिंक सब रखा हुआ है अ सामने अ इसमें चिप्स बिस्किट मिक्चर सब कुछ रखा है।

एक आलू दिख रहा है पूरा आलू के अब बहुत सारा आलू दिख रहा है आलू मिट्टी मिट्टी लगा हुआ है मिट्टी किचड़ तो एक सामान में आलू रखा है सिर्फ आलू दिख रहा है बड़ा बड़ा आलू है तो हम लोग जो सब्जी बनाते हैं हम लोग का तो वही है आलू बहुत सारा देख--

एक जंगल दिख रहा है ये एक जंगल है इसमें एक मतलब पोस्टर टंगा हुआ है खूनी झील करके तो ये पूरा जंगल का है उसमें बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है जंगल में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है और बहुत लंबा पेड़ दिख रहा है एक पोस्टर भी है उसमें छोटे-छोटे पत्ते भी--